गेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे घर भी नजर आ रहा है जिसकी सीलिंग टाली की है | चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है | आसमान नीला रंग का नजर आ रहा है बहुत सारे लोग भी घूम फिर रहे है।

सामने एक बहुत सुंदर सा गेट नजर आ रहा है जिसके बाहर एक सिक्योरिटी भी बैठी है।

-- ने एक बुक स्टोर नजर आ रहा है जहां पर बहुत सारे किताबें रखा गया है बुक स्टोर के अंदर एक --

बहुत सारे लोग वहां पर घूम फिर भी रहे हैं | बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे टू व्हीलर भी खड़े हैं ।

सामने बहुत सारा लोग नजर आ रहा है जिसके बगल में एक नदी गुजर रही है

पत्थर के अगल-बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है आसमान नीला एवं सफेद मेघ से ढका हुआ है।

सामने एक नदी दिख रहा है नदी के ऊपर ब्रिज भी है नदी का पानी बहुत ही स्वच्छ नजर आ रहा है नदी के बगल में बहुत सारा पेड़ भी नजर आ रहा है नदी के पानी में दो --

दुकान के बाहर कुछ और दुकानें हैं जो की शटर डाउन है | दुकान के बाहर लाल रंग का एक पोस्टर भी टेंगा हुआ है | दुकान के अंदर बहुत सारे सामान नजर आ रहा है।

मछली एक तिरपाल के ऊपर रखा गया है | तिरपाल का कलर हल्का स्काई कलर का है।

सामने एक ऑटो स्टैंड नजर आ रहा है जिस जहां पर बहुत सारे ऑटोस खड़े हुए हैं ठीक उसी के पीछे एक हाईवे भी नजर आ रहा है।

सामने एक बस खड़ी हुई नजर आ रहा है जिसका कलर सफेद एवम नीला कलर का है | बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए भी है कुछ लोग चढ़ भी रहे हैं।

ये एक चर्च नजर आ रहा है जो की सफेद कलर का है | चर्च के दीवाल में एक प्लास है जोकि लाल कलर का है | चर्च के बाहर बहुत सारे लोग नजर आ रहा है | अंदर भी बहुत सारे लोग हैं | रात का समय है।

जो कि काम कर रहा है घर के चारों तरफ हरे पेड़ ही पेड़ नजर आ रहा है | आसमान नीला एवं सफेद मिक्स से ढका हुआ है।